यह ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि शादी हो किसी की और साथ ही ऊपर लाइटें लगी हुई हैं और दो लड़के बैठे हुए हैं।

हुआ है। साथ ही इसमें जाली वाली खिड़की लगी हुई है और इस बिलिंग का कलर हरे रंग का दिखाई दे रहा --

सामने ही गोल वाली डाइनिंग टेबल रखी हुई है। सामने एक कैफ़े भी लगा है जिसपे ईंट आकर की डिज़ाइन बनी हुई है।

यहाँ एक सफ़ेद कलर की कार खड़ी हुई है। जहाँ पे सा उस कार में स्वातिया बना हुआ है। आस-पास रोड दिखाई दे रहा है जोकि इटा आकार का बना हुआ है।

इनके ऊपर लाईटे भी लगी हुयी है और ये वाईट कलर की दीवाल से टिका कर इस संदूक को रखा गया है।

स्कूटी नजर आ रही है और एक साईड नजर आ रही है और ये है चुरिया बुलु कलर की दीवार से है।

एक कार खड़ी है जोकि खुली हुई है जिसे एक आदमी सुधार रहा है।

और साइड में बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है और दूसरी साइड कुछ कारें भी खड़ी दिखाई दे रही है साथ ही लाइट जल रही है।

और बहोत से भगवान जी की मूर्ति मिलती है और सामने एक दीवार है जो की पर्दे के भांति दिखाई दे रही है।

एक टेंट लगा है और निचे दडी बिछी हुई है। कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं साथ ही यहाँ पे दो पंखे भी लगे हुए हैं।